लाल पीला सफेद नारंगी में लिखा है।

यहां पे रास्ता एकदम साफ दिखाई दे रहा है और एक पेड़ दिख रहा है।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

और यहां पर कुछ गार्डन दिखाई दे रहा है जो हरे भरे हैं।

कुछ सुखी लड़कियां भी दिखाई दे रही है।

कुछ गमले हरे लाल भी है जो गेट पे टंगे हुए हैं।

जो पीला नीले रंग का है।

और कुछ आदमी औरत बेग लिए दिख रहे हैं एक ट्रेन खड़ी दिखाई दे रही है।

एक आदमी काला कोट पैंट पहने खड़ा है।

एक आदमी लाल और काला कपड़ा पहने--

लाल रंग का हेलमेट दिखाई दे रहा है और एक कार दिख रहा है।

कैंडल जलते हुए दिखाई दे रही हैं।

यहां पर एक टेंपू दिखाई दे रहा है जो पीला और हरा में है और एक टोटो दिखाई दे रहा है जो लाल रंग में है।

जैसे सफेद और नीले में दिखाई दे रहे हैं।

कुछ ने गुलाबी कुछ ने पीला पहना हुआ है।

यह एक दुकान है जिस पे लिखा हुआ है।

यहां बहुत सारे आदमी औरत और एक बच्चा खड़ा है।

यहां बहुत सारे पंखे सफेद रंग में दिखाई दे रहे हैं। यहां बहुत सारा कुर्सी--

जहां बोर्ड पे लिखा हुआ है मुंबई मेट्रो वन मध्ये आपते स्वागत आ है।

पुल पे और यहां पे रस्सी बंधी दिखाई दे रही है।

यह एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है जिसका पानी लाल हरा नीला बैगनी दिखाई दे रहा है।

उस पे लाइट लगी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक आदमी माइक पे कुछ बोल रहा है और एक आदमी गिटार --

तार दिखाई दे रहे हैं एक घड़ी दिखाई दे रही है।

कुछ पंखे और लाइट दिखाई दे रहे हैं।